ये बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी बहुत ही साफ सुथरी बहुत ही बहुत ही अच्छी जिम है और इस जिम में जो है काफी --

ये एक बहुत ही अच्छी जिम है और ये जिम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है और यहाँ पर काफी अच्छी जिम लगाई जाती है और यहाँ पर --